बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं एक दीवाल में पोस्ट दिखाई दे रहे हैं।

उसके बाद उसके लाइट लगा हुआ है कई सारी खिड़कियाॅं दिखाई दे रहे --

उसके बाद ये व्हाइट कलर के में है उसमें कुछ लिखा हुआ है।

और पक्खल सामने पे दो छोटे पक्खल है दो-तीन है।

और ऊपर में शिव भगवान है दुर्गा है तो शेर है और एक बड़ा सा पोल है और एक कार्टून दिखाई दे रहा है और कई सारे बाइक दिखाई दे रहे हैं।